वहां पर शादी में आए हुए हैं और डेकोरेशन भी बहोत बढ़िया किया गया है पीछे की ओर बहोत हरि हरि--

यह फोटू कोई रेलवे स्टेशन की दिखाई पड़ रही है।

हिरन को कुछ खाने के लिए रखा हो ऐसा दिखाई पड़ रहा है और पीछे की ओर बहोत सारे--

अप के बाहर बहोत सारे रंग बिरंगी टेबल और डस्टबिन लगाई हुई है।

डांस एकेडमी मे बहोत सारे बच्चे डांस की प्रैक्टिस करते हुए--

पेट्रोल पंप के ऊपर बहोत सारी लाइन लगी हुई है।

यह फोटू कोई जिम या फिर कोई कॉम्प्लेक्स की दिखाई पड़ रही है।